जैसा कि आप यह पिक्चर देख पा रहे हैं।

जैसा कि आप यह देख सकते हैं।

रुप गुला गुब ग़ुबाड़े नजर आ रे हैं।

यहां पे यह स्टेशन पूरा ही हमको खाली नजर आ रहा है।

जैसा कि आप यह तस्वीर देख रहे हैं इसमें हमको--

यानी पेड़ ही पेड़ और पहाड़ नजर आ रहे हैं।